हमे दिखाई दे रही है | वाइट कलर के कुछ बने हुए हैं | उनपे मशीने रखी हुई है पीछे हमे एक दीवाल दिख रही है वाइट कलर के

हमे यहाँ पर एक आदमी और एक लेडीजे दिखाई दे रहे है आदमी पूरा कोरोना किट में --

और ये बहोत बड़ा हमे स्कूल टाइप का दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारे --

और हमे दो आदमी दिख रहे हैं एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ दिख रहा है एक आदमी वाइट कलर की शर्ट पे टी-शर्ट पहना हुए है |

छू रहा है और यहाँ फू-फूलों से अच्छी सजावट की गई है पीछे भी टेंट लगाया गया है।